तीन सेड दिखाई दे रा है टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है कई सारे पुरु दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

चित्र मे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे कई सामान दिखाई दे हैं डब्बे भी दिखाई दे रहे है।

कई सारे फूलो के गजरे टंगे हुए दिखाई दे रहे है सड़क दिखाई दे रही है पीले रंग की बस दिखाई दे रही है और भी कई सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।